इस इमेज में हमें एक नदी दिखाई दे रही है नदी में हमें पानी भरा हुआ दिखाई देरा है नदी के किनारे पर हमें पहाड़ दिखाई देरा है।

इस इमेज में हमे एक सड़क दिखाई दे रही है।